जो कि रिक्शा की साइड में खड़े हैं और रिक्शों के एक्सीलेटर पर हाथ रखा हुआ है।

नीचे फसल लगी हुई है फसल के उस साइड --

फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ फ्लोर है और बाहर एक कार खड़ी है।

कुछ दिख रहा है और घर का गेट जो है बहोत ही यूनिक डिजाइन का --